यहाँ एक दुकान है यहाँ पे बहुत सारे चावल बोरे बोरे से रखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे ठेला में चावल लाए गए हैं और लेबर सब उतार रहे हैं यहाँ पे एक घर में रखा गया है।

नदी मे ट्रैक्टर से बालू ले जाने के लिए आदमी आते है यह नदी मे मछली मारने भी मछवाड़े आते है नदी मे नहाने के लिए आ --

ये एक स्टेज बनाए गए है ये स्टेज पे एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है यहाँ की सजावट बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह फूलों से सजाए गए है यहाँ पे सोफ़ा लगी हुई है दो आदमी बैठे --

यह एक दुकान है। इस दुकान में बहुत सारे समान मिलते हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे सामान लोग खरीदने के लिए आते हैं।

''यह एक कॉलेज है। यह कॉलेज मे बोहोत सारे लड़के लड़की पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज मे आते है। यह कॉलेज मे बोहोत सारे प्रोफेसर है। बोहोत सारी मेम है। ये कॉलेज के बाहर बाउन्ड्री मे काफी पेड़ लगे हुए है।''

यह एक मंदिर है यह मंदिर बहुत ही पुरानी है इस मंदिर मे बहुत सारे भक्तगण पूजा करने के लिए आए हुए है मंदिर के बाहर काफी लोग --